कोट पहने हुए हैं ब बागल में बगल में लकड़ी खड़ा हुआ है और हथ हथौड़ी से उसको खोद रहे है।

यह कोई स्टेशन या प्लेटफार्म है जिसमें--

मम प्रिंटर का बॉक्स दिखाई दे रहा है प्रिंटर है और जो एयरफोन होता है ओ है।

ये मकान का डेकोरेशन अभी सजाया गया है।